यह एक तस्वीर है तस्वीर में एक गैंडा है।

इस पे नेस्कैफे लिखा हुआ है मग का रंग लाल रंग का है।

जो पैंक है बहोत अच्छा शॉप लग--

और एक तरफ रोड भी दिखाई दे रहा है।

पोस हैं और कुर्सियां भी लगी हुई है रात का समय है।

हुई है यहां कुछ कारे भी है।